पीछे अलमारी में बहुत सारी बुक्स रखी हुई--

हु व एयरफोन डाले हुए हैं।

जिनमें पौधे लगे हुए हैं।

वो छोटी-छोटी घास उगी हुई--

जहां अंदर की साइड में एक बड़ी टेबल रखी हुई है।